यहाँ पर पीछे की ओर आसमान दिख रहा हैं और इधर पेड़ दिख रहे हैं छोटी दिखाई दे रहा हैं।